और बहुत सारा पानी इसमें है।

यहां एक और भी बोर्ड लगा हुआ है जहां संगैन्थ इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ है।

यहां प्लांट भी लगे हुए हैं उसके बीच में फ्लोवरस भी लगे हुए हैं।

यहां बहुत सारी लाइटिंग है और बहुत सारे--

बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है।

जिसके मुंह पर मास्क पहने हुआ है और--

ब्राउन और ब्लैक है इसकी छत पर चार खंडे का निशान बना हुआ--

यहां चलने के लिए कई बड़े-बड़े पत्थर बॉक्स की शेप में बने हुए हैं।

आइस ब्लू कलर की जिन पहनी हुई है।

और किसी का रेड एंड व्हाइट है।

एक कटोरी में ग्रीन सॉस भी रखी हुई है और उसके अंदर एक चम्मच है।

दो स्पून पड़े हुए है और एक ब्लैक कलर की प्लेट पड़ी हुई--

इसके अंदर पेटीज पड़ी हुई है और ब्रेड भी पड़े--

यहां एक गिटार भी लगी हुईं हैं और कोई सीनरी भी लगी हुईं हैं बैठने के लिए दो स्टॉल भी पड़े हुएं हैं।

इसके ऊपर अबिन गैन लिखा हुआ है और पोस्टर बना हुआ है।

और कई इस तरीके के तेल और शैंपू भी पड़े हुए हैं।